एक बहुत ही अच्छा जगह है जो की यहाँ हम लोग आते हैं घूमने के लिए बहुत ही पुराना घर है इस घर में अब नहीं रहता है कोई इसलिए हम लोग घूमने के लिए आते हैं बहुत अच्छा लगता है यह घूमने में सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाने में बहुत अच्छा लगता है।

ये एक मार्केट है जो की मार्केट के बगल में एक इंडिया इंडिया वन ए.टी.एम. है जो की ए.टी.एम. से हम लोगो को बहुत सुविधाएं मिलती है जैसे की हम लोग पैसा निकाल सकते हैं हर डे कभी भी बंद नहीं रहता है चौबीस आवर --

एक बहुत ही अच्छा मैदान है। इस मैदान में हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है खेलने में हम लोगो को और अभी भी यहाँ क्रिकेट मैच होने वाला है जो की बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को क्रिकेट खेलने में और बहुत लोग आये हैं।

ये एक गवर्मेंट एंजिनियरिंग कोलेज है जो की इस कोलेज में बहुत ही अच्छा एंजिनियरिंग का पढाई होता है और बहुत ही --